गाड़ी स को अ मरम्मत करवाते मरम्मत करवाते है यहाँ बहुत सारा गाड़ी है मर्रमत करवाते है जैसे मे की बाइक हो गया चार चक्का हो--

यहाँ बहुत बड़ा स्कूल है स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है बच्चे में यहाँ अ-अ-अ फंक्शन पार्टी है यहाँ पर इतने टीचर देल बना रहे है ब--

यहाँ बहुत ही बड़ा फिल्ड और पार्क है पार्क में बहुत सारे आदमी पर्यटक आते है घूमते फिरते है सैर करते है।

यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर घर दिखाई दे रहा है। घर के सामने साइकिल और बाइक लगा हुआ है।

यहाँ जी पु पु यहाँ बहुत बड़ा पुराना उम आ पुराना बिल्डिंग है यहाँ पर बहुत से आदमी ए दर्शनीय करने आते आते है।

यहाँ दुकान है दुकान में बहुत सारे खेल कूद का सामान है जैसे की बैट --

यहाँ पे पुलिस का अड्डा बना रहता है।

म-म बरांडे पे कुछ सर लोग कुछ पब्लिक लोग बैठे हुए है फील्ड के बाहर सा ऊब-ऊब घास हरा-भरा दिखाई--

यहाँ गेट के भीतर हरा-भरा पौधा है गेट के बाहर बहुत सारा दुकान है गेट के सटे एक साइकिल लगा हुआ है और पोस्टर --

यहाँ से लोग आधार कार्ड पेन कार्ड आदि बनवाते --

फील्ड के अन अन फील्ड के फील्ड जो सुंदर दिखाई दे रहा है यहां पर एक ग फील्ड का गमला है यहाँ अंदर में।

गेट के बाहर यहाँ बैनर लगा हुआ है बैन् अ बैनर है यहाँ यहाँ चारो तरफ गेट लगा--

यहाँ पे बहुत बड़ा होटल है होटल के नीचे बहत सारा पार्किंग है पार्किंग के नीचे बहुत सारे ए ए चार चक्का गाड़ी लगे हुए हैं यहाँं पे बहुत आदमी नीचे उम्म उम्म पार्किंग के नीचे मार्केट हैं मार्केट में बहुत सारा दोकान हैं।

यहा पे से न बिल्डिंग के अगल-बगल पेड़-पौधा है न यह बिल्डिंग के नीचे सा मार्केट बना हुआ है मार्केट मे बहुत सारे सामान का खरीद-बिक्री होता है ।

यहाँ पे फील्ड है फील्ड मे धान धान रोपा हुआ है यहाँ के उम्म किसान दो बैठे हुए है इधर परी उम्म खेत के उम्म पोल गिरा हुआ पोल के ऊपर बिजली का तार गया हुआ है यहाँ यहाँ एक झंडा गड़ा हुआ है।